और ये भार एक बहोत बड़ा बोर्ड और भी लगा--

यह छोटा सा ढाबा लग रहा है और बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां सारी अच्छी अच्छी बनती हैं।

और इंग्लिश मे बोरड लगा हुआ है।

और लाइटे भी सुंदर सुंदर जैसी हुई है।

वहां बहोत सारी कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां सब औरते और आदमी मछली बेच रहे हैं।

यह मछली का बाजार है।

यहां बहोत सारी तस्वीरें रखी हुई है।

उधर खभों की लाइट चसी हुई है।